ऊपर लाइटें लगी हुई है पंखे लगे हुए है।

इस फोटो के अंदर एक कमरा है उसके अंदर बहोत सारे फर्नीचर वगैरा लगे हुए हैं।

पेड़ के नीचे बैठने के लिए पत्थरों से कुछ बनाया हुआ है सेट --

और खिड़की दरवाजे दिखाई दे रहे हैं ऊपर शोर प्लांट वाले प्रकाश के वो कांच लगे हुए हैं।

एक पाइप लाइन पड़ी है और सामने देखे तो बहोत ज्यादा मात्रा में घर बने हुए है घरों के आस --

इस फोटो में पानी इकट्ठा हो रखा है और पानी के चारों ओर पत्थर की दीवार बनी हुई है।

कुछ महिलाएं खड़ी हैं और इस कॉलेज के आगे बहुत सारे मोटरसाइकिल और स्कूटी खड़ी है।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

यहां पर बर्फी वगैरह भी मिलती है पर अनेक प्रकार की मिठाइयां भी मिलती है बाहर एक --

इस फोटो में बहुत सारी साइकिलें पड़ी है जो कि बहुत सारी है और कलर कलर की है छोटी बड़ी है।

सामने एक घड़ी लगी हुई है। कुछ पैकीज पड़े हैं।

और बिजली वाले बोर्ड लगे हुए हैं ब्लैक कलर की पिन डाली हुई है स्विच लगे हुए हैं।

मां अंबे मोटर्स कंपनी आल कार सर्विसेज होता है यहां पर बाहर दो गाड़ियां खड़ी है एक ब्लैक कलर की एक व्हाइट कलर की।

प्रसाद बढ़िया है सीढ़ियां लगी हुई है एक आदमी खड़ा है सामने।